और यहां एक आदमी के हाथ मे मोबाइल फोन भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे वाल में तीन टी_वी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहोत सारे घर दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ पहाड़ दिखाई दे रही है।

झे यहां पर एक सफेद रंग की गाड़ी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहुत सारे बच्चे फ्लोर में बैठे हुए दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे रेलवे स्टेशन दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा टावर भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे सुखा जमीन और उसके सामने बहुत सारे घास फूस दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे दुकान दिखाई दे रही है।

और चिप्स के पैकेट को लटकाया गया है।

और मुझे ग्रीन से बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रही हैं।

वॉल में मुझे बहुत सारे तस्वीर और ग्रिटिंग कार्ड्स चिपकाए हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे डोरमेट को सुखाया हुआ दिखाई दे रही है।

ये तस्वीर में पानी दिखाई दे रही है।

पानी के ऊपर में बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं।

मुझे यहां मिरर के रिफ्लेक्शन में एक आदमी दिखाई दे रही है।

और यहां मुझे लाल कलर की फूल की पेड़ भी दिख रही है।

ऊपर मुझे बहोत सारे अलग अलग पोस्टर लगाए हुए दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे वाइन शॉप दिखाई दे रही है।

माथे पर टोपी लगाए हुआ है और आंखों पर चश्मा पहना है।

यहां मुझे कांच के ऊपर में पोस्टर लगाया हुआ दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर साइकिल की दुकान दिखाई दे रही है।

खिड़की में मुझे पर्दा लगा हुआ दिख रहा है।

उस साइड मुझे लॉन्ड्री लैब लिखा हुआ भी दिखाई दे रही है।

झे यहां पर सफेद कलर की वॉल दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर बहोत सारी बाइक खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है।

और मुझे यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रही है।